ये ये एक मकान बना हुआ है और इसके दीवालों पर भाइट कलर की पुटीन है गेट लगे हुई है नीचे टाल्स बछे हैं इसमें--

यह एक बाल कटने वाली दुकान है एक आदमी बैठा है ।

यह एक बहुत सुंदर बंगला है।

इसमें सीसी लगी हुई है और नीचे आ--

यह एक पेट्रोल पंप की दुकान है दो आदमी हैं एक बैठा है एक खड़ा है टैंकी रखी हुई है।

यही एक रूम है इसमें टी_वी लगी हुई है बीच में केक दिख रहा है कुर्सी है नीचे टेबल वगैरह है।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां एक बस खड़ी है और एक गा --

बाहर खड़ी है बहुत सारी गाड़ी रखी हैं।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर बहुत साड़ी --

यह एक बर्तन वाली दुकान है जिसमें बहुत सारी--

एक रूम हैं यानी कि बंगला है।

दिवालो पर टाल्स नीचे भी टायल्स है।

दिवालों के ऊपर पट्टी नीचे किनारे पर हरी हरी--

मौसम्मी वगैरह का के बाहर वगैरह बनी है।

वह एक बहुत ही खूबसूरत दुकान है जिसमें कपड़े हैं जींस के --

जैंसों के कपड़े वगैरह हैं नीचे दुकान में टाल्स है बहुत --

बादल है हवा थाई कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

दो कुर्सियाँ भी डली हुई हैं इस दुकान के अंदर --

और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हरे हरे --

यहाँ मोटरसाइकिल है सीढ़ियाँ लगी हुई हैं।

कॉलेज है पेड़ी भी लगी हुई है।

अ यह एक बहुत बड़ा अम् --

इसमें रखने सामान खरीद के रखने वाला--

करने वाला भी है इसमें बहुत अच्छा --

तीन इसमें अलमारी जैसी छोट छोटी बॉक्स रखी हैं बड़ी सी --

यह एक ऑफिस है बहुत ही सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई है यहाँ --

मोबाइल की दुकान रिचार्ज की दुकान है ये चार्जर की एयरफोन की।

बहुत ही अच्छी दुकान है इसमें फोन सभी तरीके के मिल --

यह एक रूम है जिसमें बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

बहुत सुंदर ही इसमें प्रोटीन है।

और अच्छा कलर लग रहा है बहोत सुंदर कोई आदमी वगैरा नहीं है बस खाली--

और पानी है और पानी में ही पत्थर हैं चट्टाने हैं बड़ी बड़ी --

अ कुछ सामान बहुत सारा रखा है आदमी वगैरह कोई नहीं दिख रहा है यहाँ --

यह दूल्हे दुल्हन का मंडप बना हुआ है।